एक लड़की है हाथ में फोन ली है एक लड़का है।

दुकान के नीचे गार्ड बैठा हुआ है बहोत सारे बाइक स्कूटी लगे हुए हैं।

गेट के बाहर बहुत सारे लोग हैं एक लेडिस है ब्लैक कलर का--

कपड़ों का दुकान है दुकान का बोर्ड ग्रीन है रेड है दुकान के बाहर बहोत सारे सारी टंगे हुए हैं कलर --

रोड है बोर्ड है बोर्ड का कलर ब्लू है नीला है जिओ लिखा हुआ है एक लड़का है ब्लैक कलर का--

रूम है रूम का कलर पिंक है व्हाइट है दीवाल पे ट्यूबलाइट लगा हुआ है ट्यूबलाइट का कलर व्हाइट है पर्दा है।

कलर ब्राउन है बहोत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं फर्श का कलर --

रूम है रूम का कलर वाइट है गेट का कलर वाइट है रूम के अंदर बहुत सारी लेडीज हैं जेंट्स हैं लेडीज ने--

पर्स पे बैग है बैग का कलर ब्लू है।

जिम रूम है रूम का कलर व्हाइट है शीशा लगा हुआ है पोस्टर ब्लैक कलर का है ट्रेडमिल बहोत सारे हैं।

टेबल है टेबल का कलर ब्लैक है टेबल के ऊपर व्हाईट कलर का प्लेट है प्लेट में बिरयानी रखा हुआ है बिरयानी का कलर --

कार है कार का कलर व्हाइट है चेयर है एक लेडीज है।